यहाँ कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है जोकि डान्स परफॉरमेंस करते हुए दिखाई दे रहे है हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जोकि डान्स परफॉरमेंस एन्ड होने बाद एक फव्वरा दिखा उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है नीचे हमें कुछ परेंट्स दिखाई दे रहे है जोकि यह बच्चों का डान्स देखने लिए आये हुए हैं।

यहाँ हमे कही सारी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है ऊपर एक पोस्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ अ-अ-आयोजन किये जा रहा है यहाँ पे हमे आगे जा करके और भी बड़े पोस्टरस दिखाई दे रहे है आसपास हमे सजावट किये हुआ फा-फ्लॉवरस दिखाई दे रहे है।

प्लेट दिखाई दे रही है जिसमे कुछ बिरियानी रखी हुए दिखाई दे रही है आसपास कुछ लोग बैठे हुए है जिनके पास और भी प्लेटें रखी हुए है सामने एक थम्ब्स अप बौटल दिखाई दे रही है एक पानी की बौटल दिखाई दे रही है हमे कुछ ग्लासे दिखाई दे रही है नीचे हमे कुछ टेबल दिखाई दे रही है जिसके ऊपर ये खाना रखा हुआ है।

आस पास हमे कुछ बोहोत सारी किताबों की वैरायटी दिखाई दे रही है नीचे टाइल्स दिखाई दे रही है एक कुर्सी दिखाई दे रही है एक काउंटर दिखाई दे रहा हैं।

एक शोरूम के अंदर का दृश्य है यहाँ पे हमे अ कई सारा डेकोरेशन का सामान दिखाई दे रहा है जो की बैलून्स से यहाँ डेकोरेट किया गया है ऊपर की सीलिंग बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है यहाँ का इंटीरियर बहुत खूबसूरत बनाया गया है यहाँ पे हमे कुछ और भी लोग दिखाई दे रहे है एक वॉचमन दिखाई दे रहा है जो की गेट के बाहर खड़ा हुआ हैं।

यहाँ एक मजदूर दिखाई दे रहा है जो की काम करता हुआ नजर आ रहा है कुछ गाड़िया खड़ी हुए है कुछ कुर्सी खड़ी हुई है कुछ बाइक खड़ी हुई हैं।

यहाँ हमे बिल्डिंग नजर आ रही है इसके यहाँ हमे आसपास कुछ आकृति दिखाई दे रही है इसके बगल में हमे कुछ बड़ी बड़ी खिड़किया नजर आ रही है यहाँ पे नीचे हमे कुछ गाड़िया नजर आ रही है नीचे हमे कुछ पार्क नुमा आकृति के पौधे लगे हुए नजर आ रहै है कुछ फूलों के पौधे लगे हुए है कुछ और भी पौधे लगे हुए हैं।

हमें एक दुकान दिखाई दे रही है जो की बुक सेंटर दुकान है यहाँ पे हमे कुछ लोग दिखाई दें रहे है जो इस दुकान के आगे खड़े हो कर के कि किताबें खरीदते हुए नजर आ रहे हैं।